जो भी यहां देखने का न नजारा है कुछ अलग ही नजर आ रहा है देखने में।

इसके नीचे ब्लॉक भी लगा हुआ है काफी अच्छा माहौल देखकर मेरे को लग रहा है।

और यहां पे काफी लोग आते होंगे कपड़े खरीदने अपना चॉइस पसंद करने के लिए।

और ये बहोत ही बड़ा है ऊंचा भी है और काफी अच्छा देखने में लग रहा है।

और आलू आलू पराठा है।

जैसे की मैं देख रहा हूं की ये कटनी जक्शन लिखा हुआ है।

और काफी अच्छा नजरा लग रहा है देखके और काफी अच्छा बहोत सुंदर लग रहा देख के।

रस्सी बांध कर लाइन भी बनाई है कि इस पार से उस पार